ये योगा क्लास चल रही है यह क्लास की तस्वीर है इसमें कई व्यक्ति योगा कर रहे हैं इसमें महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं।

और ये एक पीछे छोटी सी मीनार नजर आ रही है।

बीच मे इसमे कैडबरिस लगी हुई हैं पीछे का शटर लगा हैं लोहे का और ये केक जिस टेबल पे रखा हैं उसमे सिल्वर कलर की फॉइल लगी हुई हैं।

ये एक ग्राउंड है इसमे कुछ बच्चे दौड रहे हैंरेस कर रहे हैं बच्चे तीन है दो नहीं पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैंटी शर्ट एक काले रंग का पहना हुआ है पीछे इसमे हरे रंग की घाँस लगी--

ज जंगले पे सीढ़ी पे खड़ा हुआ है साइड की जो खिड़की है वो कांच की है।